एक मोटर साइकल लगा हुआ है और एक स्कूटी भी लगा हुआ है एक व्यक्ती अपने हाथ में छाता लेकर आगे बढ़ रहा है।

रोड के ऊपर सभी एक ऑटो जा रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी वायर गया हुआ है।

यहाँ पर एक मम वाटर फॉल जैसा कुछ दिख रहा है बहुत सारी आदमी काफी दूर से उसको देख रहे हैं।

यहाँ पर ढलाई के लिए छत में बिन लगा हुआ है एक दो तीन चार पांच छे आदमी खड़े हैं आसपास पेड़ है।

जे बेड पर सोया हुआ है| यह एक मोजा पहना हुआ है लेकिन जूता नही पहना हुआ है।

दीवाल येलो कलर का है। पर्दा लाल कलर का है| इनके घर में एक घड़ी भी रखा हुआ है।

यहाँ पर कई सारे रिक्शे खड़े है एक व्यक्ति खड़ा होकर हाथ में खैनी बना रहा है।

यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है कुछ लोग फूल और माला लेकर अम माँ को प्रणाम कर रहे है।

सफ़ेद कलर का कार है और वह इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।

में बहुत सारे सब्ज़ी रखे हुए है जैसे की टमाटर कोबी मिरचाई बंधा कोबी।

येल्लो कलर का टी-शर्ट पहन कर खड़ा है यहाँ पर बहोत सारे गुब्बारे ह-ह अम सफेद कलर के है।